बस वस सब चलती रहती है दूर दूर के लोग इसी बस मे आते है और अपना सब बच्चों को पढ़ाते है और --

विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है।

ये अपने जगदलपुर का पोस्ट ऑफिस है अपने यहाँ के लोग दूर दूर के लोग पोस्ट ऑफिस करने आ अपना पोस्ट यहाँ पे बैंक भी हैअपना आते रहते हैं टिकिट विकिट लेते है पोस्ट ऑफिस का लिफाफा विफाफा--

ये यहाँ का जगदलपुर का चौक है यहाँ पर माड़िया लोग की मूर्ति लगी हुई है लोग चौक से आना-जाना करते है सब का देखते है सब मिल जुल के --

संग्राल--संग्रहालय है यहाँ पे लोग सब कहाँ कहाँ की मूर्ति मन को दूर दूर से लाके सजाके संग्रहालय मे रखी है लोग उसको देखते है सब पहचानते है दूर दूर के लोग है।